पास मे पास मे घर भी बना हुआ है। घ घ घर में भी काफी लोग छत पे खड़े हुए नजारा देख रहे है बहुत सारा लोग आस-पास है।

फी ऊंची चट्टान दिख रही है इस चट्टान पर एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है।

रोड दिख रहा है रोड पे दो-तीन ऑटो खड़े हुए एक साइड खड़े हुए दिख रहा हैं और एक पेड़ दिख रहा है काफी ऊँचा सारा साइड में और सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

गार्डन दिख रहा है यहाँ पे लग रहा है की औरतों का कुछ फंक्शन चल रहा है बहोत सारी औरतें बैठी हुई है।

काफ़ी कार कारे खड़ी हुइ है और ऑरेंज कलर का पेंट भी करा हुआ है काफ़ी ऊची बिल्डिंग दिख रही है।